ये एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई दे रही है।

ये छोटे बच्चों के क्लास रूम की तस्वीर दिखाई दे रही है।

ये किसी दुकान के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यहां पर एक लड़का है जो मिरर में सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहोत सारी लाइटें जली हुई नजर आ रही है यहां पर --

बहोत सारे अलग-अलग तरीके के बड़े-बड़े गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ छोटे बालकनी में रखें हैं।

ये किसी मॉल की तस्वीर दिखाई दे रही हैं।

कुछ डमरू रखे हुए हैं छोटे छोटे कुछ पेन के स्टैंड रखे हुए हैं कुछ की स्टैंड रखे हुए हैं और कुछ अलग अलग तरह की चीजें रखी हुई है।

यहां पर बहोत सारे लाल कलर के बैलून छत पर भी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक कार खड़ी है जिसका बोनट खुला हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट के पार्टी हॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ बैलून के द्वारा डेकोरेशन किया हुआ नजर आ रहा है।

हॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है।

ये एक मछली बेचने वाले की दुकान के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है।